स्टैंड के ऊपर एक अर्टिफिकल पक्षी बना हुआ हैं ।

जिसमे एक लेडीस और प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए है।

यहाँ पर मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है।

कार के टायर मुझे नजर नहीं आ रहे है।